हैलो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है के पॉप चर्च है और यहाँ पे दो पॉप है और यहाँ पे सेलब्रैशन लोग कर रहे है क्यों की चर्च मे क्या होता है के लोग अपने प्रिय को विश करने के लिए जाते है--

ये जो डेकोरेशन वो काफी एक तरीके से बहुत ही एन्सि-- टाइप का बना हुआ है।

उस तरीके का जैसे की लोग रहते हे जिस परिवेश में उसको अपना घर बना--

दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका जगह है जो कि आपका एक कह सकते है की लोग यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते--